ये तस्वीर रात में खींची गई है।

यह तस्वीर दंत चिकित्सा संस्थान की है जो झारखंड राज्य में है।

तस्वीर में कपड़ों का सेक्शन दिख रहा है जिसमें ज्यादातर मेंस वियर टंगा हुआ है।

यह तस्वीर एक फिजियोथैरेपी क्लिनिक या केंद्र की लग रही है।

खिड़की से प्राकृतिक रोशनी आ रही है और पर्दे लगे हुए हैं।

कुछ मजदूर साइड पर काम कर रहे हैं।

ये चित्र एक छोटे से कारखाने की तरह है।

एक इंसान ऊपर बैठा हुआ है दूसरा इंसान जमीन पर बैठा हुआ है।

पूरी दीवार बड़े बड़े पत्थर से बनी हुई है दीवार के ऊपर कुछ घास और पौधे उग गए हैं।

सीढ़ियों के पास एक छोटा दरवाजा है सामने की जमीन चट्टानी है ।

जो कि आइसक्रीम को ठंडा रखने में मदद करती है ।

कमरे में एक लकड़ी की टेबल है जिसपर कुछ किताबें एक पौधा और अन्य छोटी वस्तुएं रखी गई है।

टेबल के सामने एक और कुर्सी है जिसे प्लास्टिक से कवर किया गया है।

मुख्य द्वार के ऊपर एक हरा और सफेद साइन बोर्ड लगा हुआ जिसमें मस्जिद का नाम अरबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है।

जिनमें कुछ तरल पदार्थ भी नजर आ रहे हैं और बहुत सारे पीपिट्स भी रखे हुए हैं।

सामने सादे रंग की बहोत सारी फूल हैं और जमीन पे लाल रंग की कालीन बिछाई गई हैं।

जिसमें विभिन्न प्रकार के केक डोनट्स चॉकलेट और पेस्ट्री का चित्र है।

भवन का रंग हल्का गुलाबी और सफेद है।